ये ट्रैवल बस है टाटा पुशबैक ये सब है ये छोटा बच्चा खड़ा है।

सामने खाली रोड है सूखे पेड़ लगे हैं। जंगल वाले एरिया है पार्किंग वाला --

मार्किट बंसल शॉप कप्तान काम्प्लेक्स नंबर

दो टायर में दोनों वो हैं और ऊपर सीट नहीं लगी हुई है। ब्लैक कलर की गाड़ी है।

और ये कपड़े की और शेरवानी कोट पेंट की दुकान है।

यह चर्च है चर्च से सजा हुआ लाइटे लगी है चर्च पे और बिल्डिंग पे ।